गांव का नाम शहर का नाम कोई राजलदेसर स्टेशन है रेलवे का पास में एक ट्रेन भी --

अच्छा सा ग्राउंड मैदान है पेड़ पौधे नजर--

दुकानदार दुकान के अंदर काउंटर के पिछे खड़े हैं व्हाइट शर्ट पहना है दो शख्स बाहर बैठे हैं चे --